कॉपी किताब कलम लेके बैठे हुए हैं बेंच पर--

यहाँ दिवार पर कुछ लिखा हुआ है और कुछ डिज़ाइन भी किया है ये गधे जैसा दिख रहा हैं और--